यहां पर एक अजमन लिखा हुआ है अंजमाल। प्रेष वूमेन लिखा हुआ है जिसके अंदर दो इंसान --

जिन्होंने ब्लू नही बल्कि रेड कलर की टी शर्ट डाल रखी हैं और यहाँ पे जो कोच हैं।

यह एक फिटनेस दुकान के सामने लगे हुए पोस्टर की फोटो हैं एन्ड जस्ट बगल में इसके एक भारतीय--

जिस पर एक रस्सी टांग कर बहुत सारे कपड़े टांग रखे हैं जैसे कि जस्ट सामने रेड कलर की टी शर्ट पहन के एक लड़की पानी डाल रही है एक पौधे के अंदर और वो देख रही--

यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है जो की बोहोत कोचिंग सेंटर है और जस्ट सामने एक --

बगल में सूर्य प्लेट के लिए लाइट्स रखी हुई है अ सीमेंट वाली ईंटों का खड़ंजा लगा हुआ है पेड़ों से फूल निकल रहे--

जो की फिटनेस कर रह है बिकोस ये एक छोटी जिम है जहा पर साइकिलिंग होती है जिसपर बेठ कर के --

लाल है कुछ चौकोर गमले हैं कुछ गोल-गोल हैं यहां पर हरे-भरे पेड़ पौधे लगे हैं।

इसमें से दो आदमी बाहर निकल के आ रहे हैं एक औरत बगल साइड में जा रही है और एक इंसान अपनी स्कूटरी खड़ी कर रहा है।

यह एक मिनी मकान की फोटो हैं आई थिंक ये न्यू न्यू किचन बनी हुई हैं बट ये ओपन नही हुई हैं।

बैनर टंगे हुए है दुकानों पे जेसे की टी_वि_एस टायर का वो टंगा हुआ है।

एक पंखा रखा हुआ है इसकी आय थिंक रिपेयरिंग है सारा सामान लोहे की अलमारी में रखा हुआ है पंखोंकी किट रखी हुयी है।

टेस्टिंग कर रहे है यहाँ पे काफी सारे इंसान है जो अपने काम में लगे हुए है टेस्टिंग के काम में और यहाँ पर टोटल तीन से चार लड़किया है जिन्होंने वाइट कलर के--